कँघी के जैसे प्लाई भी लगा हुआ है।

और बड़े बड़े खंबे भी नजर आ रहे हैं बिल्डिंग भी नजर आ रहे हैं और पेड़ भी है।

ये यह पुरानी इमारत नज़र आ रहे है बहुत ही पुराने स्टाइलिश से बने हुए इमारत दिखाई दे रहे है--

और गार्डेन भी सामने नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति भी अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में बहुत सारे लाईट का बत्ती जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाजू में एक टेबल है।

ये बहुत बड़े होटल टेम्पल ट्री बहुत ही सुंदर नजर आ रहे है।